बहुत ही खुल्ली जगह पे है दिन का समय है साथ में घर दिख रहे हैं।

और एक वृक्ष बहोत ही बड़ा जो सामने दिख रहा है।

बहोत ही सुंदर और अच्छे तरीके से बने हुए हैं।

सामने एंजेल पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है स्टेज बनी हुई है और बहोत बड़ा ये हॉल है एक ब्लैक बोर्ड --

बनी हुई हैं और सामने कच्चा रास--

टर्न का इंतजार कर रहे हैं शटर खुला हुआ है और लाइट्स लगी हुईं--

काली कुर्सी रखी हुई है और ये बहोत ही बड़ा शोरूम है।

बहुत ही बड़ा स्कूल है स्कूल बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है सामने एक ग्राउंड बनी हुई है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं।

घरों के लिए यूज किया जाता है ये खुली जगह पे रखे हुए है। पीछे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

रखा हुआ है और ऊपर लाइट जगी हुई है दिन का समय है।

बारिश का मौसम है सभी जगह गीला हो पड़ा है। बाहर उसके बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। गेट --

बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर तरीके से स सजाया हुआ है सोफे लगे हुएं हैं।